बहा पर कुछ बहुत सारा बहुत सारा सामान दिख रहा मोबाइल स्कूटी मने ब्लैक कलर में नजर आती हुई मुझे अच्छी लग रही दिखाई दे रही है।